रूम की बहुत सारी खिड़कियां भी नजर आ रही है और एक पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

और एक बक्सा बी लगा हुआ नजर आ रहा हैं और ऊपर छत नजर आ रही हैं --

और सामने तिरंगा झंडा भी नजर आ रहा है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे और --

जो काज की शोकेस के ऊपर रखे हुए नजर आ रहे हैं एक बैग पर पनी लपटी हुई नजर आ रही है।

और नीचे वाले बेगों पर भी पन्नी लपटी हुई नजर आ रही है।

उसीके बगल में एक खेत बी नजर आ रहा हैं और खेत में लगी रेलिंग बी--

ठीक है मैं देख पा रही हूँ एक स्कूल नजर आ रहा है और स्कूल में बहोत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे है सामने ब्‍लैक बोर्ड नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक मैदान नजर आ रहा है मैदान के अंदर एक के खड़ी हुई नजर आ रही है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां बहुत सारी हरी घास नजर आ रही है और हरी घास के बगल में एक बड़ा-सा तालाब नजर आ रहा है ।

और एक बिजली का खंभा भी नजर आ रहा है जिसके ऊपर बहोत सारा जाला भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

ए_सी की डिब्बी लगी भी नजर आ रही है और आई_सी_आई बैंक का ए_टी_एम भी नजर आ रहा है।

ट्रेन के आस-पास बनी हुई लोहे की रेलिंगे नजर आ रही हैं एक कुत्ता भी नजर आ रहा है रेलिंग पे बैठा हुआ एक आदमी भी नजर आ रहा है।

नजर अ रहा है कोको के अंधार से कुछ लटकता नजर अ रहा है और कुछ कब--

सामने कुछ और पैसों के खोपे भी रखे हुए नजर आ रहे है और बलाब भी रखे हुए नजर आ रहे है ।

बिल्डिंगों की खिड़कियां भी नजर आ रही हैं और मंदिर के बहोत सारे जीने भी नजर आ रहे--

सामने ही कुछ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और रात का वक्त नजर आ रहा है।

बिजले की कमरे भी नजर अ रहा है और एक घर मई खरा हुआ ऑटो भी नजर आ रहा है और एक शॉप भी नजर आ रही है और बिजले की--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने रोड नजर आ रहा है रोड में भरा हुआ पानी भी नजर आ रहा है सा--

और बहुत बड़ी-बड़ी लंबें डंडे भी नजर आ रहे हैं जिनपे जीने बने नजर आ रहे हैं सामने पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और सामने--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है और सामने एक दुकान भी नजर आ रही है और उसके अंदर रखा हुआ बहुत सारा फ़ूड भी नजर आ रहा है उस

एक रखी हुई नजर आ रही है और जिम के ऊपर बंधे हुए बहुत सारे बैलून भी नजर आ रहे हैं।

और जिम की रेलिंग भी नजर आ रही है और उसके अंदर जलती हुई लाइटें भी नजर आ रही है एक --

पीले कलर का इक्विपमेंट भी रखा हुआ नजर आ रहा है और एक लाल--

आगे से दो आदमी आते हुए नजर आ रहे हैं एक बड़ा सा लोहे का गेट बी नजर आ रहा हैं --

और एक टी_वी लगी हुई नजर आ रही है और उसके ऊपर लगा हुआ एक पलक भी नजर आ रहा है ।

जैसे की मई देख पा रही हु एक स्टेज नजर आ रहा है और स्टेज के उपर छ औरते नजर आ रही है ।

गाड़िया भी खरी हुयी नजर आ रही है कुछ गाड़िया सफ़ेद कलर की कुछ गाड़िया कलर की नजर आ रही है व--

और सफेद कलर की छत बी नजर आ रही हैं और बहुत गाड़ियां और बेने बी नजर आ रही हैं --

और बहुत सारा रोड भी नजर आ रहा है और आसपास लगे हुए पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं वो